यह तस्वीर एक पर्यटक स्थल प्रतीत हो रहा है।

ये तस्वीर एक पुराना जंगल जैसा वीरान प्रतीत हो रहा है।

यहां पे अऽ बहुत सारे उजली कलर के पत्थर भी हैं।

और उन सीढिय़ों को एक नुकीली तारों से बांध दिया गया है।

यह तस्वीर एक बहुत बड़ा बेस्ट जगह किया जहां पर कि हमें बहुत सारे कलर मैं भी देख सकते हैं।

और एक जगह एक बड़ा सा लाफिंग बुद्धा का प्रतिमा भी बनाया गया है।

एक बड़े हाथी की और एक छोटा हाथी की जो उनका बच्चा प्रतीत होता है।

और बहुत सारे ग्राहक खड़े है उन्हें खरीदने के लिए।